यहां पे एक ल लड़का खडा हुआ है। यहां पे बहोत बड़ा घर दिखाई दे रहा है ऊपर से पियर कलर --

हुआ है यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जो जूता पहना हुआ है यहां पर बहुत बड़ा घर है जो वाइट कलर --

कार दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहे ऊपर आसमान नीला कलर का दिखाई दे रहा है यहा पर भी--

जिसमे बहुत सारा मशीन रखा हुआ है।

रखा हुआ है यह पर एक चाबी रखा गया है अ--

व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ प बहोत सारा लोहा ल सब रखा हुआ है।

यहाँ पर बहोत बड़ा नदी है जिसमे बहुत सारा पानी सब--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

बहोत सारा विद्यार्थी सब भी खड़ा हुआ है एक मैडम जी है।

आसमान उजला कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक मोबाइल का दूकान हैं जिस पर नोकिया लिखा हुआ है यहाँ पर एक आदमी हैं जो दू दुकान के आगे खड़ा हुआ है यहाँ पर लोन पर फ़ोन मिलता है।

यहां पे बहुत बड़ा पार्क है यहां पे बहुत बड़ा एक बिल्डिंग दिखाई दे रा है जो व्हाइट कलर से पेंट किया गया इसमें दरवाजा खिड़की सब लगा हुआ है यहां प हरे भरे--

यहाँ पर हरे-भरे पेड़-पौधा सब ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ बढ़िया पार्क है यहाँ पर--

बहोत सारा घास सब दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान उजला कलर का दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है हरे-भरे पेड़ पौधा सब बहुत दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक झंडी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है। नीचे सब फूलों का पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक टीबी है टीबी में एक लड़का खड़ा हुआ है दो कार दिखाई दे रहा है दोनों कार व्हाइट कलर का है यहां पर हरे भरे--

दिखाई दे रहा है यह रेड कलर का पटरी दिखाई दे रहा है।

मोटर रखा हुआ है यहाँ पर एक पोस्टर छपा हुआ है।

आ रहा है जिसमें पानी सब आ रहा है यहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधा सब दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी वो घर है एक आदमी हेलमेट पहना हुआ है नीचे पानी --

दिखाई दे रहा है वो छोटे छोटे भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है यहां पर इधर--

लगा हुआ है यहाँ पर मशीन रखा हुआ यहाँ पर--

बहुत सारा सामान सब रखा हुआ है ये यहाँ घर वाइट कलर का दिखाई यहाँ पे पोस्टर छपा हुआ है यहाँ पे शटर --

छ अ अच्छा घर है ऊपर असमान व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहां प कंटेनर दिखाई दे रहा है नीचे बालू दिखाई दे रहा--